अंदर मरीजों का ईलाज किया जाता है यहाँ पर बहोत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं महिला भी दिखाई दे रही है स्कूटी वगेरा भी वहाँ पे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ भी वगैरा वहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बोहत बड़ी-बड़ी चट्टानें भी दिखाई दे रही है और पहाड़िया भी दिखाई दे रही है बहुत ऊंची-ऊंची पहाड़ी देखने को मिल रहे है बहुत ही घना जंगल देखने को मिल रहा है जंगल के अंदर से नदी भी निकली हुई है इसमे भी पेड़ दिखाई दे रहे है।